हाँ यही यह ऑफिस में सभी के अलग-अलग --

यह एक रेस्टोरेंट है ये रेस्टोरेंट काफी बड़ा है इस रेस्टोरेंट में --

यह फुटबॉल मैदान काफी बड़ा है यहाँ पे बहुत सारे लड़के --

यहाँ रोड पे एक ऑटो खड़ी है यह ऑटो --

यह ऑटो सड़क पे चल --

दे रहे हैं और काफी सारे कोचिंग सेंटर भी हैं।

यह बैंक है यह बैंक बहुत बड़ी है यह बैंक में --

इस ऑफिस में इंश्योरेंस लिया जाता है।

यहाँ पे बहुत सारे आदमी अपना इंश्योरेंस देने के लिए आते हैं।

यहाँ एक जिम दिखाई दे रही है। यहाँ पे लड़के और लड़कियां इस जिम में आते हैं। यहाँ पे एक लड़का--

यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो मांसाहारी शाकाहारी तथा सभी प्रकार के स्टोर --

यहाँ पे काफी साड़ी जादी भी लगी हुई है। बिच में खम्भे भी दिखयी देते है। दूर-दूर तक बोहोत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है। काफी सारे आदमी यहाँ टहलने चलने की --